सामने की तरफ जमीन पर काफी व्यक्तियो की भीड़ है ये सामने देख रहे है सामने कॉउंटर पे एक व्यक्ति खड़ा है।